ये एक पे पेट्रोल पंप है जहाँ उम पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी पेट्रोल एवं डीजल यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी बाइक वाले यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आते हैं।